एक लेडीज और एक अंकल बाइक से जा रहे हैं।

में बहुत सारे कपड़े रखें हैं जींस रखी है टी-शर्ट रखी है शर्ट रखे हैं |

पैन क्रीम रोल बहुत सारा सामान रखा है |

एक पेड़ बहुत बड़ा लगा हुआ है।

बहुत सारी लाइटिंग लगी है।